ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा और भी बोहोत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक दीवार पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। येलो कलर दिखाई --